यहां पर दो व्यक्ति खड़े हैं जोकि सामने की ओर देख रहे हैं।

दो व्यक्ति बैठे भी हैं यह टेंट --

और इसके सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है।

और बहोत सारे पेड़ पौधे मकान इत्यादि दिख रहे है यहां से--

यहां पे बहोत सारे बंदा गोभी उगे हैं।

ये छड़ हैं यह आधा ही बना है और यहां पे एक व्यक्ति व्हाइट शर्ट ब्लैक जींस पहने खड़ा है।

और पानी के आगे एक बहुत बरा --

यहां पर एक कलेक्टर का बोर्ड में पंचायत लिखा गया है।

यहां पे एक कार के सामने एक व्यक्ति है जिसने व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लू कलर का पेंट --

दरवाजे के बाहर एक स्कूटी खड़ी है और--

बैग भी है इसमें पंखा लगा हुआ है।

एक औरेंज कलर का पोस्टर में लगा है जिसमें लिखा हुआ है आई_सी_आई